जिसमें हम बेड देख सकते हैं ऊपर वाइट कलर का गद्दा बिछा है वाइट कलर की चद्दर बिछी हुई है।

कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटी बना रहे हैं।

साइड से ओपन है सिर्फ स्टील के पाइप लगे हुए है।

ये एक अ हिन्दू फेस्टिवल की फोटो है।

और बहोत सारे लोग उसके सामने खड़े हैं।

जिसमें कुछ ब्राउन दिख रहे हैं पत्तियाँ जिसमें ग्रीन पत्तियाँ है कोई पौधों में फ्लावर्स भी दिख रहे हैं।

बैलूंस येलो पिंक वाइट और ब्लू दिख रहे हैं।

कि मट्टी के गमले गमले हैं बहुत सारे और उसमें बहुत सारे पेड़ ल पौधे लगे हुए हैं।

कुछ लगाया हुआ है जाल जैसा --

बच्चों के खेलने के लिए इंतजाम किया गया है।

कुछ पौधों में फ्लावर भी दिख रहे हैं।

और बिल्कुल सामने एक लेडी खड़ी है जिसने येलो कलर की सारी पहनी है।

अ कुछ भाजी नजर आ रही है हरी कलर की प्याज नजर आ रहे है।

वो एक लिफ्ट की लिफ्ट दिख रहे हैं यहां पे दो लिफ्ट --

और एक पिंक कलर की चादर रखी हुई है।

साइड में जो टाइल्स है वो ब्राउन दिख रही है।

और सामने से हमें एक पत्थर ये रोड सीमेंट की रोड दिख रही है।

ये एक जनरल स्टोर की फोटो दिख रही है नीचे जनरल स्टोर है।

बीच में जो खंभे लगे हैं वो ब्राउन कलर के है।

अ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक आदमी --

कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर कुछ लिखा है।

और एक लड़का येलो शर्ट में मोप से सफाई कर रहा है।

ये एक पीकॉक दिख रहा है हमें फोटो में बहुत बड़ा मोर है।

गुलाबी कलर के कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं बाकी हरे कलर के पौधे हैं।

और इसके सामने तीन आदमी खड़े हुए हैं।

यहाँ हम एक रास्ता देख रहे हैं छोटा सा जिसके आस दोनों तरफ --

अनार जल रहा है पूरे जोर शोर में --

तीन लोगों ने हाथ मिलाकर फोटो क्लिक की है ।

एक लेडी भी दिख रही है पिंक कलर के टीशर्ट में --

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है सफेद कलर की बिल्डिंग है।

ये एक अ होटल के अंदर --